तो कुछ पत्तियां हल्के भूरे रंग की नजर आ रही है।

इस चित्र में एक टेबिल दिखाई दे रही है।

काउंटर लकड़ी का बनाया गया है।

सड़क के किनारे काफी बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं।

इस चित्र में हमें जंगल के बीच में एक बड हाउस दिखाई दे रहा है।